खाना खा रहे हैं| काफी बैठे हैं| एक डँड़िया भी दिख रही है जिस पर काफी तोते बैठे हैं| दूसरी भी दिख रही है जिस पर भी कापी तोते बैठे हैं।